जिसके सामने एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है जिसमें एक ताला भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत बड़ा एक पोस्ट ऑफिस बैंक दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक दुकान दिख रहा है। जिससे जाने का दो दरवाजा भी दिख रहा--

और यहां पर कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर बहुत सारे कचरा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक पोस्टर भी साटा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर दो दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहे हैं जो काम कर रहे हैं।

यहां पर कपड़ा का माल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे कपड़ा दिखाई दे रहा --

यहाँ पर बहुत सारे रजाई दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुंफु कराटा के बहुत सारे आदमी दिख रहे है और यहां पे बहुत सारे आदमी दिखा रहे हैं और यहां पे कराटा सिख रहे हैं।

और यहां पर बहुत सारे वैक्स भी लगाए हुए दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे बहुत सारे पर्दा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक टेंपो भी दिखाई दे रहा है और यहां पर एक दुकान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर चार लड़की दिखाई दे रही है जो अपना पेंडिंग --

और यहां पर पीछे एक स्कूल भी दिखाई दे रहा है।

व यहां पर बहुत सारे फूल भी दिखाई दे रहे हैं।